बैठे बंदे भी दिख रहे हैं।

और ऊपर दो घंट लगे दिख रहे हैं।

दरवाजा बना दिख रहा है और पूरा---

तो ना लिखा है जो हो।

जो काफी खाली है एक लड़का वहां पे बैठा हुआ दिख रहा है और सामने एक---

छह सात औरतें योगा करती हुई दिख रही है।

यह मच्छी दिख रही है और सामने एक औरत मच्छी बेचते हुए दिख रही है और छत्री --

और कुछ खिलोने बच्चों के रखे हुए दिख रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ हैविजय पुस्तक भंडार ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है और एक लड़का--

दिख रही है और सामने काउंटर पे यह लड़का बैठा---

मुझे यहां ये एक शॉप दिख रही है।

जैसे छोटे बच्चों की स्कूल दिख रही है।

टेबल रखा हुआ दिख रहा है।

मुझे यहां एक कमरा दिख रहा है।

बाजू में भी टेबल खुर्शियां दिख रही--

और एक बंदा खड़ा दिख रहा है।

और चट्टाने बड़ी-बड़ी दिख रही है।

बार पार्किंग जैसा दिख रहा है।

और इसके बाजू में यह लंबी पाइप पानी की--

और बीच में एक गुलाब का फूल रखा दिख---

मुझे ये एक रेलवे टेशन दिख रहा है।

और उसके बंगड़ों के बाजू में यह स्कूटर खड़ा---

नोटबुक और स्कूल की बुके दिख रखी दिख रही है और ये दो बंदे बैठे हुए---

और इस तरफ ये हरे हरे घास--

ब्लू कलर की लगी दिख रही---

और सामने ठंडे पीने की बोतल रखने की फ्रिज दिख रही है।

और उसके बाजू में बिस्किट वगैरह वेफर वगैरह का पैकेट रखे हुए दिख रहे है और यह आइसक्रीम की---

नीचे छोटे फूल का टोकरा रखा ---

मुझे यहां ये एक पब्लिक गार्डन जैसा दिख रहा है।

और यह एक बीच में भी बर बर्गर जैसा पेड़ दिख रहा है।

मुझे ये एक नदी दिख रही है नदी में ये नाव खड़ी---

दीवाल चारों कार से बंद दिख रही है।